एक घर सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें आसमान दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रहा है और यह इमेज देखने में अच्छी लग रही --

एक स्टूल रखा हुआ है साइड में ब्लू कलर का और इसमें दीवार दिख रही है जो उजले कलर की है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है अच्छा लग रहा --

इसमें पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एक ग्रीन कलर का अ पेड़ लगा हुआ है जो अच्छा लग रहा है ये देखने में सुन्दर है भई।

हमें इस इमेज में पानी दिखाई दे रहा है दो तीन नाव दिखाई दे रही है।

ये कोई महाविद्यालय की पिक ली गयी है।